बस स्टैंड है यहाँ पर एक दूकान भी है जिसमे कुरकुरे चिप्स रखा हुआ है।

गेट बनाने में यहाँ पे खिड़की भी बना दिए हैं।